गोल गोल टेबल है जिसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछा हुआ है।

यहाँ पे आदमी खड़े हैं और पीछे खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे रूम दिख रहा है हाल टाइप में।

ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं।

और दो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं।

नीचे दो सीजर कैची रखी हुई है।

सामने बोर्ड लगा हुआ है छह लिखा हुआ है जिसके ऊपर।

पूरा डेकोरेशन हुआ है गेट दो आदमी खड़े हुए हैं।

सामान रखा हुआ है काफी दिख रहा है।

पीछे एक मशीन रेड कलर की कुछ उसमें लगी हुई है और पैरा वगैरा दिख रहा है।

यहां पे बुक्स काॅपिस रखी हैं खूब सारी।

पेड़ दिख रहे हैं खूब सारे लगे हुए हैं।